गेट के बहार का काफी सारे राइट साइड में साइकिल खड़े हैं राइट साइड में जैसे भी है रोड पर एक स्कूटी में तीन लोग--

यह एक गैस एजेंसी खुला वाला शॉप है जो खुला है ब्लाक कलर का गेट है खुला है।

यह कॉलेज का पिक्चर है सामने का नजारा दर्शाया गया है काफी सुन्दर लग रहा है।

यह पेट्रोल पंप का तस्वीर है आगे पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पर एक ट्रैक्टर खड़ा है आगे बाइक भी है लेफ्ट साइड में कुछ पौधे नज़र आ रहे है राइट साइड पर एक बड़ा सा पेड़ है।